ये एक बहुत ही सुंदर सैलून है जहाँ पर बहुत सारे चेयर्स रखी हुई हैं और लाइटें भी लगी हुई हैं।

यहाँ पर लोग अपने हेयर कटिंग करवाने के लिए आते रहते हैं।

एक आदमी काम कर रहा है और कुछ बच्चे खा रहे हैं खाना।

यहाँ पर बहोत सारे वायर या तार भी लगे हुए हैं जोकि शायद यहाँ कुछ होने वाला है।